दीवार पर पंखा और छत से बहुत सी लाइटें लटक रही है दिन का --

सामने लकड़ी की अलमारियों में खानों में बहुत सी किताबें हैं बच--

एक बाग में एक पानी के तालाब के पास अंधेरा हुआ है।

पीछे छूरियां चाकू भी पड़े हैं।

कपड़े की दुकान में एक आदमी बाहर बैठा कपड़े पसंद कर रहा है ।

काॅपी के दुकान के बाहर सुरते अंदर-बाहर आ जा रहे हैं बत्तियां--

एक बड़ी कपड़ों की दुकान है।